जो कि चावल को भिगोकर बनता है।

अ बहुत सुन्दर-सुन्दर फ्लावर्स होते हैं पेड़ होते हैं।

और हम लोग बहौत रिलैक्स फील करते हैं क्युकी हम नेचर के पास होते हैं।

अ व्यापार भारत में है साउथ में अ मछलियों का ज्यादा सेवन किया जाता है।

यहाँ पर बैठ कर हम लोग नई-नई चीजे सीखते हैं नये-नये सबजेक्ट के बारे में जानते हैं टीचर हमें आकर पढ़ाते हैं।

कपड़ो की एक दुकान है जिस में की आ डमी डमी को कपड़े पहना रखे हैं।

आंख की गोलियां आती है जिससे की हम लोगों की आंख --

पानी में खेल सकते हैं और गर्मियों में मजे कर सकते हैं।

दोस्त बनाते हैं टीचर्स होते हैं।

हेल्दी रह सकते हैं।

आ प जहां से लोग पानी अपने दैनिक कार्यों के लिए लेके आते हैं।

सब्जियां खाने से हम लोग हेल्दी होते हैं।

और जो कि जिसमें की बिहार की महिलाएँ शायद फास्ट रखती हैं और सूर्य की पूजा करती हैं।

उस दिन ये छट छठ माता की पूजा करते हैं।

और हमारी दुनिया का लगभग सेवेंटी नाइन परसेंट जो हिस्सा है वो अल्मोस्ट पानी से ही बना हुआ है।